मैं इस चित्र में देख पा रही हूं कि--

कुछ लोग अंदर बैठे हैं और इस रेस्टोरेंट के ऊपर एक इंडिया का--

मै इस चित्र में देख पा रहीं हूं--

छोटे बच्चों की स्कूल की क्लासरूम है जहाँ पे बच्चों ने --

गांव का रस्ता है जहां पे--

कार की सर्विसिंग हो रही है।

दुकान है जहां पे कुछ दरवाजे रखे हैं जिसमें--

मंगलम स्टोर स्टेशनरी की होलसेल एंड रिटेल की शॉप है।

जो की ग्रे और ब्राउन कलर की हैं।

इन केबिन्स में लैपटॉप और कंप्यूटर रखे हैं।

बाहर रेती और उसके पॉट रखे हैं।

इस फोटो में एक जंगल दिखाई दे रहा है।

एम_आर_एफ की टायर्स की शॉप है।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

जगह है जहां पे कुछ लोग शूटिंग --

पिंक कलर के फ्लावर से इसे डेकोरेट किया गया है।